सामने एक अ लाइट --

कर रहे हैं और टीचर्स जो हैं वो खड़े होकर--

जिसके अंदर बहोत सारे गिफ्ट आइटम्स

गेट बना अह लगा हुआ है गेट जो है वो लाल रंग का है।

जहां पर कहीं गाड़ियां जो है वो--

यहां एक कार भी दिखाई दे रही है।

ये किसी मच्छी मार्केट की अह तस्वीर है।

और टेबल पर गिलास रखे हैं।

और पीछे जो है वो बिजली के दो खंभे भी लगे हुए हैं।